बाइस इसकी बाइक स्टोर है यहां प्रेम बाइक नाम से से जाना जाता है यहां स्कूटीयां वगैरा खड़ी हुई है।

केले के पत्ते पे नाश्ता लगाया गया है हरी चटनी दी गई है साथ में।

तेल भरा रहा है और आस-पास पंख के एक पत्तियां जल रही है और पंख नीले कलर का है यहां पे डीजल-डीजल लिखा हुआ है।

यह एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है जिसके अंदर बहोत सारे चार्जर और फोनस वगैरा भी पड़े है और लाइट जगी हुई है।

कुछ बच्चे बैठे हैं और आसमान नीला दिखाई दे रहा है और बहुत अच्छा वातावरण है और साइड में फूल वगैरा लगे हुए हैं।